इस चित्र में एक आदमी दिखाई दे रहा है।

और दो गुब्बारें भी लगे दिखाई दे रहे हैं जो पीले और सफ़ेद रंग के हैं।

कुछ पेड़ ज़मीन में लगे हैं कुछ गमले में लगे हैं।

और कुछ लोग खाना खा रहे एक सामने बूढ़ी औरत बैठी है।

ये एक चित्र है। इस चित्र में एक तालाब है।